उसकी सूंड में एक आदमी बैठा हुआ है।

डांस नेशन लिखा हुआ है।

और शॉप का नंबर ट्वेंटी नाइन हैं हैं।

बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

दो तीन बुलेट भी रखी हुई है।

इसका पूरा नाम स्वामी विवेकानंद--

यहां पर एक बड़ी सी खिड़की लगी है।

बहुत सारी पुस्तकें एवं कॉपियां रखी हुई हैं।

शादी अटेंड करने आए हैं और होटल में बोहोत सारी लाइट लगी हुई है।

डिजाइन अच्छी लग रही है मस्त--